और इस कॉलेज के ग्राउंड में हरा घास लगा हुआ है।

यह एक रोड है इस रोड के किनारे कुछ खेत नजर आ रहे हैं।

पिछे की ओर कुछ पोले लगे हैं पोल के पीछे की ओर कुछ पेड़े दिखाई दे रहे है।

कुछ छोटा वन भी दिखाई दे रहे है बादल छाए हुए--

पीछे की और दो हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बराबर में एक व्यक्ति बैठा है एक स्कूटी खड़ी है।

एक ने पैंट शर्ट पहन रखी है एक ने कुर्ता पजामा पहन रखा--